यह जगह है जहाँ पर दिखाया जा रहा है के कुछ लोग है बैठे हुए हैं। और ए इंसान बिस्किट बेच रहे है और उस सामने एक लड़के लोग आये है खरीदने।

काफी सुन्दर दिख रहा हैं जगह बगल में एक घर भी हैं जो कि व्हाइट कलर का है देखने में।

और हुंडी की हुँडा की बाइक दिख रही है बगल में एक साइकल भी लगा हुआ है अगल-बगल खिड़कियां है देखने में काफी सुन्दर लग रहे है और ऊपर में आसमान लग रहा है देखने में।